बहुत सारा आदमी खड़े हैं पुलिस भी है बहुत अच्छा है आसमान भी दिख रहा है पेड़ भी दिख रहा है।

बहोत अच्छा ड्रेस पहना है देखने में --

यहाँ पे किराना दुकान है ।

इसमें पूरे किताब को रेक में सजा कर रखा गया है एकर बल्ब जल रहा है।

जंगल मे टावर है कई टावर दिख रहा है आसमान भी दिख रहा है देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है हरियाली ही हरियाली दि --

यहाँ पे एक कार है कार ख़राब हुआ है मिस्त्री आए हुए हैं मशीन से कार को ठीक कर रहे हैं।

पूरी जाम है पूरी रोड जाम है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है बोर्ड लगा हुआ है देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है |

क्रिसमस का पेड़ है कुर्सी है झंडा फड़ाने वाला बनाया गया है फूल का पौधा है मकान दिख रहा है एक आदमी है जो झाड़ू --